कार का मुंह खुला हुआ है सामने बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

सामने आग जल रही है मिस्त्री आग में लोहे की रॉड गर्म कर रहा है।